यहां पे एक मां बेटी नजर आ रहे हैं पीछे बिल्ली दिख रही है गमले में पौधे दिख रहे हैं।

यह एक रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है यह मुंबई लोकल का रेलवे स्टेशन है यहां कई सारे इमारतें दिख रही हैं।

यह रेलवे की पटरी नजर आ रही हैं जहां तीन रेल गाड़ियां--

यहां एक रेलवे स्टेशन है जहां कई लोग खड़े हैं पेड़ भी है।